दुकान के अंदर दो कार खड़ी हुई हैं एक लाल रंग की है एक कार क्रीम कलर की है ऊपर एक पोस्टर लगा हुआ है।

दिया है नीचे छोटे छोटे पत्थर रखे हुए है और अगल बगल सूखे लकड़ी है।